ता है देखने में यह छोटे-छोटे पेड़-पौधे में है अच्छा है।

पूरा बादल ढका हुआ है यह एक लम्बाई मशीन के तरह है यह हरे छोटे पेड़-पौधे हैं --

उधर में है पेड़-पौधे है हरा जैसा--

यहां पर बहुत गेहरा पानी है ऊपर में रोड जे रोड है।

मांगलाड में है जो --